यहां पर दो गमले रखे हैं जो गुलाबी और हरे रंग के हैं तथा दो पीले और बैगनी रंग के। यहां पर कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं जो ऑरेंज रंग के --

उनका रंग सफेद तथा यहाँ पर हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं। यह गहरे हरे रंग के पेड़ है। एक तख्त पड़ा हुआ है। जिसका रंग काला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक सजावट दिखाई दे रही है यह सजावट गुलाबि और सफेद और पीले रंग के फूलों द्वारा की गई है।

जो काले रंग की हैं यहाँ पर ट्रेन की पटरी भी दिखाई दे रही है।

कुछ गुब्बारे लगे हुए जो नारंगी हरे और सफेद जमीन का रंग काला है। यहाँ पर शीट है। सीट का रंग --

ई है। एक व्यक्ति के हांथ में काले रंग का छाता बी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक जमावड़ा लगा रखा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जो नीले और काले रंग की है। इसपर मेडालिया लिखा हुआ है। यहाँ पर एक नीचे --

शीशेदार दरवाजा भी लगा हुआ है तथा ऊपर बिल्डिंग पर नीले रंग के बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं।

ऊपर एक बैनर लगा है सफेद रंग का। जिस पर यूको बैंक आसमानी रंग से लिखा ऊपर एक बोर्ड लगा है जो आसमानी है जिस पर सफेद रंग से --

किराए हेतु संपर्क करें लिखा हुआ है। जमीन का रंग भूरा है। एक पेड़ है। पेड़ का रंग हरा है।

कुछ वाहन खड़े। जिसमें साइकिल और बाइक है काले रंग की है।

हरा और नीला है। यहाँ पर एक कारपेट दिखाई दे रही है जो लाल और सफेद रंग की एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफेद रंग के --